इस फोटो में मुझे आदमी दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे --

इस फोटो में मुझे महिला और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे सड़क दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक किला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पेड़ दिखाई--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

इस फोटो में मुझे हॉल दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बल्ब दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे लोहे का गेट --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

इस फोटो में मुझे जूता चप्पल की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाइ दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहेती हुई नदी दिखाई दे रही है।